जिसमे काफी सारे पेड़ दिख रहे है। पहाड़ पर भी काफी हरियाली है। पहाड़ के नीचे साईड काफी सारी गाड़िया खड़ी दिख रही है।

पर कुछ बड़ी बड़ी टेबले और उनके आइड साइड ऑरेंज की कुड़सी लगी हुई दिखाई दे रही है टिलिंग पे एक टुब लाइट भी दिख रही है और इक टेबल पे कुछ बुक्स --

पहाड़ दिख रहे है पहाड़ों पर काफी सारे पेड़ दिख रहे है यहाँ पर किनारे पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है ये इमेज एक छोटी सी नदी की है जिसके आसपास काफी सारे पेड़--

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक नदी की है नदी के साइड मे कुछ चट्टान है तो वही कुछ जगह हरा भरा जंगल और कुछ पहाडे भी दिख रही है।

यहा पर थोड़ी ही दूर पे एक शहर दिख रहा है जिसमे कुछ घर और बिजली के खंबे है।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

समुद्र की है इस समुद्र के बीच मे प्लास्टिक की कैनो पर रखा हुआ एक घर बना है।

जो टीन से बना हुआ है आसपास जंगल दिखाई दे रहा है जिसमे कई सारे हरे-हरे पेड़ भी है।

नदी के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा सीडी का टेंट भी दिख रहा है। नदी के दूसरी साइड पहाड़ और हरे भरे जंगल दिखाई दे रहे है।